एक बेट क्रिकेट भी लटका हुआ है।

तीनों ने धोती पहनी हुई है दो ने बनियान पहनी हुई है।

यहाँ पर तीन लड़कियाँ बेठी हुई है तीनो के बाल खुले हुए है।

और एक लड़की टेबल चेयर पर बैठी कुछ लिख रही है।

और उसने वाईट कलर के कपड़े पहने हुए है।

सामने एक वाइट कलर का टेबल भी है पीछे एक बोर्ड लगा है।

और दरवाजे के ऊपर बच्चन्स इनिगेसन्स लिखा हुआ है।

उसके बाहर दो आदमी भी खड़े हैं।

इसका तट सूखा है और उसके पीछे एक सफेद रंग का बहुत बड़ा घर भी है।

एक आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है बराबर में रेलिंग लगी हुई है।

इसमें लिखा हुआ हैं एंट्री गेट --

एक बड़ा सा थैला है जिसे कांटे पर तौला जा रहा है और बहोत से मजदूर--

गट्टे पड़े हैं और कांटा ऑरेंज कलर का है।

और सोफे लगे हुए है सोफे पिले रंग के है बिच में एक टेबल रखा गया है टेबल के ऊपर एक गुलदान रखा गया है।

साइड में शीशे का केबिन भी लिखा हुआ है।